ये झील है। यहाँ पर लोग बोहोत -बोहोत दूर के आते हैं नाव में तेरने के लिए। नाव में घुमते है और नहाते हैं।

ये मैरिज हॉल है। यहाँ पर रात मे रात दिन में कार्यकर्म होते हैं। शादी विवाह जन्मदिन में पार्टियाँ होती हैं। बोहोत सुन्दर लग रहा है यहाँ पर।

यह बहुत ही सुन्दर स्कूल जेसी बगंला लग कोठी बनी हुई है। यह बोहोत ही ऊँची है बोहोत ही बीच मे है।

बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पर वाहन पार्किंग होती है। खड़े होते हैं।

यहाँ पर लड़की के मॉडल जैसा प्लास्टिक का खड़ा हुआ है एक बेठा हुआ है उसे वस्त्र पहाने दिये गये है फिटिंग देखा रहे है। ऐसे कपड़े है बोहोत ही अच्छा मॉल है। यहाँ पर अपने मनपसन्द के कपड़े ले जाते हैं।

इसके दोनों तरफ अगल-बगल मे पौधे भी हैं इस से हमे कार्बन-डाई-ऑक्साइड मिलती है बहुत ही --